जहां पर आजू बाजू सामने से बहोत सारे हरे--

और सामने थोडे और कुछ घर वर सब दिख रहे हैं।

यहां पर थोड़े गाड़ियां लगाए हुए हैं इंडियन बाइक्स एंड सुपर बाइक्स सर्विस है।

इस तस्वीर में दो आदमी कार वॉश कर रहे हैं।

यहां एक सड़क जा रही है।

और एक आदमी और एक छोटी बच्ची जा रहे है।

जो की एक जिम में खड़ा है।

इधर एक फर्स्ट बिल्डिंग में ढेर सारे पी सी प्लेटफार्म करके लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं।

सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के कुछ दो लोग बैग लटकाए हुए आए हुए हैं।

और अ खिड़कियां भी इधर हैं।

ये कर्टनस लगे हुए हैं।

एक फोन करने के लिए लैंडलाइन भी है।

जहां पर लोग इसमें से पैसे निकालते हैं।

इधर एक कार खराब हो गई है और दो आदमी उधर खड़े हुए हैं।

और भी बहोत सारे है।

यहां एक मस्जिद है जहां पर बहोत सारे ऊपर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

छोटे बड़े बहोत सारे पत्थर एक आदमी पत्थर को टच कर रहा है जो की पत्थर ऊपर है और नीचे भी है।

और इधर एक भी है।

इस तस्वीर में हमें स्लाइडिंग दिख रही है।

और उधर जा के कार पार्किंग भी करना है जो कार पार्किंग का क्या हुआ है।

पर बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

इस तस्वीर में एक मंदिर दिख रहा है।

उसके के बाजू में एक बड़ा मकान दिख रहा है।

थोड़े लोग बैठे हुए हैं एक नीले रंग का कूड़ेदान भी दिख रहा है।

और एक लकड़ी भी दिख रही है।

यह एक स्कूल है जिसका नाम आर स्कूल दिख रहा है।

सामने एक टॉवल नजर आ रहा है।

थोड़ी लोग खड़े भी है।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारे कार्ड्स दिख रहा है पेपर के।

और थोड़ी दिए भी जल रहे हैं।

यहां पर एक आदमी एक महिला को अटेंड कर रहा है।

एक आदमी डंबल्स उठा रहा है एक आदमी हार्ट एक्सरसाइज कर रहा है और एक आदमी खड़ा है।

एक आदमी सबको देख रहा है और एक घड़ी भी दिख रही है।

और पत्थर मतलब पड़ा हुआ है।

इधर बोर्ड पे आइसक्रीम कोनैटो और पॉपसिकल दिख रहा है।

और अ इधर एक बीच में कांच लगा हुआ है।

एक्सीलेंस इन अर्ली चाइल्डहुड है।

हमें एक लाल रंग की कार भी दिखाई दे रही है।

इधर एक कुकीज का रखा हुआ है।

क्योंकि काम कर रहे हैं।

ऊपर थोड़ी लाइट लगे हुए हैं और दो तीन पंखे दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारे दिख रही है।

सीधी और होरिजोंटल में खड़िया दिख रही है।

सफेद रंग की भी है।

और इधर बहुत सारे सामान हैं जैसे कि चिप्स अंडे।

कई तरहों के चिप्स है कप्स है और भी बहुत सारे चीजें है।